यह एक सिने मैजिक का थिएटर है बिल्डिंग बनी हुई है बड़ी सारी पास में बाइक खड़ी है चार बाइक है।

अलग अलग कैबिन बने हुए हैं सभी कैबिन में ए_सी लाइट्स पंखे लगे हुए हैं लोग बैठे हैं।

पास में पेड़ लगा रखा है।

कैमरा लगे है और कुछ पंपलेट लगे है फोन पे या कुछ पेटीएम जैसा स्कैनर लगा है।

जिसमें अलग अलग प्रकार की सब्जियां रखी हुई है कुछ बर्तन रखे हुए हैं बॉटल्स भी बिसलेरी बॉटल रखी हुई है।

टैक्सी गाड़ियां कुछ लोग टैक्सियों में बैठे हैं तो कुछ गाड़ियों से उतर रहे हैं।

और इलेक्ट्रॉनिक शॉप के ऊपर लोगो लगा हुआ है दुकान का।

यह बीकानेर चौपाटी है जिसमें लिलीपोंड है पेड़ है पेड़ पर कुछ लाइटें लगी हैं।

लोग भगवान की आरती कर रहे हैं।

यह एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप है जिसमें कुछ एल_इ_डी रखी है कुछ --

पास में पतंजलि स्टोर है कुछ बाइक्स खड़ी हैं।

जिसमें एक आदमी बैठा है लैपटॉप पड़ा है डस्ट है और कुछ पैंपलेट लगा रखे हैं।